पीला कलर का जिसमें लिखा है ऑल आउट --

और एक आदमी सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है। मंदिर जैसा देख पा रहा हैं पीला कलर का एक महिला दिख पा रही हैं।

पिंक है किसी ये कलर येलो है पर हम लोग एक सीढ़ी देख पा रहे हैं जिसका रेलिंग है कुछ हम लोग टब देख पा रहे जो कि रे--

इस लिए यहां पर हम पेट्रोल लाल कलर का पेट्रोल देख पाएंगे डीजल लिखा हुआ है।

किसी का कलर ग्रे है किसी का कलर --

माउस देख पा रहे हैं एक स्विज बोर्ड देख पा रहे हैं एक हमलोग चेयर देख पा रहे हैं जो कि स्टील है।